और कुछ चित्र चिपके हुए है और यहाँ पर जो महिलाएं लेटी है वो योगा कर रही है उन्होंने अपने पैर को पीछे उठा कर के हाथ से पकड़ा हुआ है।

और यहाँ पर दूसरी ओर पेड़ लगे हुए है एक खंभा लगा हुआ है ऊपर की तरफ बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है जिसमे।

यहाँ पर एक फोटो फ्रेम है जिस पर लिखा हुआ है स्वास्तविक आकार का संघराम उत्खनन के समय कोल्हुआ।

और किनारे की तरफ अ हरे रंग का है और अ गोल रंग का गुम्बज बना गोल है और बीच में मूर्ति बनी हुई है।

यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसमें पीछे की तरफ लड़के ने बैग टंगा हुआ है आगे किताब-कॉपी लिया हुआ है उसे खोला हुआ वो देख रहा है।

काशियां हुई है डिज़ाइन बनी हुई है।

और यहाँ पर सड़क है सड़क पर प सफ़ेद रंग की पट्टी है किनारे की तरफ पीछे की तरफ पेड़ है और कुछ पहाड़ हैं बड़े।

जिसमें मछलियाँ रखी हुई है कुछ व्यक्ति ने यहाँ पे खड़े हुए हैं घास उगी हुई है।

अ हरे रंग की सफ़ेद रंग की ग्रे कलर की पट्टी में और जीन्स पहनी हुई --

और यहाँ पर पीछे की तरफ पेड़ है और आगे की तरफ घास है कुछ उगी हुई हैं कुछ छोटे पौधे भी हैं।

और दोनों तरफ हरे रंग का अ बाउंड्री है जिसपर पुताई हुवी है और लिखा हुवा है और रोड है सामने उसपर सफ़ेद रंग की एक पट् --